नेक ये बहुत बड़ा शॉप है ये शॉप मे बहुत सारे मिलते हैं बुक इस तरफ बुक के इस तरफ कपड़ा का दुकान है बहुत दूर-दूर से आते हैं लोग।